छोटी छोटी क्यारी भी है और सब्जियां लगी है।

एक मैंडम है जो मास्क लगाई खड़ीं है।

काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं स्लाइडर दिख रहा है।

फोर व्हीलर भी दिख रही हैं।

ब्लू वाइट येल्लो ऑरेंज ब्लू वाइट ग्रे कलर सभी कलर की बहोत सारी दिख रही हैं।

और लोहे की की ए खंभे लगे हुए हैं।

एक ट्रान्सफार्मर दिख रहा है। खम्भे दिख रहे हैं जिसपे वायर लगी हुई है।

ब्लैक कलर की ट्रे हैब्लैक कलर के स्पून और ब्लैक कलर के कप हैं।

और खंभे भी लगे हुए हैं। पेड़ भी दिख रहे हैं। टिना लगा हुआ है।

टावर लगा हुआ है बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।